बहोत अच्छी फोटो है। ऊपर से बादल दिख रहे हैं और पेड़ भी दिख रहे हैं। चार पाँच --

और पेड़ भी दिख रहे हैं किनारे से बोहोत अच्छे-अच्छे हरियर -हरियर दिख रहे होगो।

के किनारे-किनारे से लाइट लगी हैं।

बाहर बिल्डिंग में ऊपर इंटर कॉलेज का नाम लिखो होगो।

जेमे एक स्कार्पियो गाड़ी की धुलाई हो रही होगी।

ये जो आदमी खड़ो जन वो करिया पेंट पहने हेगो और सफ़ेद शर्ट पहने।

एक पानी वाली बॉल पड़ी है पानी डाली गार्डन में।

पेड़ दिख रहे हैं कि बहुत अच्छी-अच्छी बिल्डिंग भी दिख रहीं हैं।

नीचे फर्श हेगो। पूरी दीवाल में ब्लैक पेंट हेगो। एक आदमी खड़े हेगो जामे पोस्टर में।

पूरे में काउंटर है। काउंटर के अंदर बहोत सारे केक रखे हेंगे।

जो एक समीर बस ट्रेवेल वाली फोटो हेगी।

जा में नीचे बोनट में नीलो नीलो पेंट है वो --

और सिलपायरो नमन ट्रक के दो टायर दिख रहे होंगे। बाउंड्री के साइड लाइटें दिख रही हेंगी।

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वालो हो जो वही बना रहो वही देख रहो लेवल नाप रहो बाकि और जहाँ में पीछे एक बिल्डिंग हेगी।

और ये स्पेशल रबड़ी स्पेशल कुल्फी --